ऊ जो सिक्यूरिटी संभाल रहा है।

जो कि तीन-चार महीने पे एक बार अ निकलते हैं।

एप्पल डिफरेंट प्रकार के अ फल और सब्जियाँ मिलते हैं यहाँ एक आदमी जैसा कि दे बेचता हुआ दिख रहा है |

किताब का दुकान है जहाँ पे किताब विभिन्न प्रकार के किताब मिलते हैं और अच्छे रेट पे मिलते है।

यह एक फोर्ड का गाड़ी है जो कि फोर्ड बहुत पोपुलर हुआ करती थी।